ये एक ढेले की है जिसके अंदर कुछ खाने का सामान क्यूआर कोड दिख रहे है।

यहाँ अंदर फुल्की रखी हुई और गैस रखी हुई दिख रही है। यहाँ एक बड़ी सी टंकी भी है और कुछ अन्य बर्तन भी।